बने हुए हैं और एक व्यक्ति महिला जा रहे हैं और अ ऑटो जा रहा है। साइड रोड के साइड पे पेड़ लगे हुए हैं। सामने एक ब्रिज जा रहा है।

पर पार्क में दो व्यक्ति है एक व्यक्ति लेटा हुआ है जो कि--

लक्ष्मी होटल का बोर्ड और इसके सामने तीन व्यक्ति तिन चार व्यक्ति खड़े हैं।